इस तस्वीर में तीन कुर्ता रखा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक चर्च दिख रहा है उसको सफेद रंग किया है।

लंबा सा सीढ़ी भी है और दरवाजा भी।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

लाल रंग की टी शर्ट पहन के एक इंसान बैठा हुआ है।

का बना हुआ भी है।

इस तस्वीर में दो मनुष्य खड़े हुआ दिख रहा है और उनके माथे में हेलमेट भी पहना हुआ है।

बहुत सारे लोहा भी और बैंबू भी लगाया हुआ है।

आसमान है उसमें सफेद बादल भी है।

बहुत सारे बैंबू और लोहा भी लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में पत्थर से बनाया हुआ बहुत ज्यादा इंसानों का मूर्ति दिख रहा है।

बहुत ज्यादा पेड़ पौधा भी दिख रहा है।

और रेलिंग भी लंबा सा दीवार है और वायर पोल भी है छोटे छोटे पत्थर और जमीन भी है।

येलो कलर का घर दिख रहा है।

रेड और येलो कलर का डस्टबिन रखा है।

खिड़कियां और दरवाजा भी बनाया हुआ है।

उसमें बहोत सारे सामान रखा हुआ है और बाहार में येलो कलर का डस्टबिन भी है।

वायर पोल और वायर भी लगा हुआ है।

नीचे में ग्रीन कारपेट भी बिछाया हुआ है।

सफेद रंग का दरवाजा है और बहोत सारे सेल्फ लगाया हुआ है।

खिड़की और दरवाजा में पर्दा लगाया हुआ है जो की ब्लू और पिंक कलर में है।

अंदर में दो चेयर और एक टेबल रखा हुआ है।

साड़ी पहन के और मनुष्य है सफेद साड़ी पहना है।

उसमे बहोत सारे खिड़कियाँ और दरवाजा बनाया हुआ है और रेलिंग भी।

पीछे में पहाड़ी है और बड़े बड़े पेड़ भी लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में बड़ा से बिल्डिंग दिख रहा है।

ऊपर में लाइट बल्ब भी है बहुत सारे मनुष्य भी इकट्ठे होके है।